आगे पे एक लड़की जा रहा है।

उसका बगल पे एक स्कूटी पार्क कर के रखा गया है।

कॉर्नर पे बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

इसका बगल पे दो तीन आदमी लोग खड़ा करते हुए दिखाई दे रहा है।

दोनों साइड का वॉल पे स्विच बॉक्स दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर मुझे एक हार्डवेयर दुकान दिखाई दे रहा है।

नीचे बगल पे कुछ बांध के रखा गया है।

तस्वीर पे मुझे शादी का माहौल दिखाई दे रहा है।

इनका ऊपर में बहोत सारा सुंदर से फ्लावर से सजाया गया--

उसका बगल पे बहुत सारा बैलून सजा के दिखाई दे रहा है।

लेफ्ट साइड कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक पोल्स दिखाई दे रहा है।

अलग अलग कलर का टाइल्स भी दिखाई दे रहा है।

एक साइड पे नहाने वाला दिखाई दे रहा है।

कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहा है और प्रोफेशनल ।

राइट साइड कॉर्नर पे दो लोग एक दूसरे से बात कर रहा है।

सेट को अंदर में बादल भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पे हमें एक रेस्टोरेंट का नजर आ रहा है।

और उनका टेबल पे क्यू_आर क्युआरपे दिखाई दे रहा है।

वॉल पे एक गणेश जी का फोटो चिपकाया गया है।

और बहोत सारा स्कूटी बाइक पार्किंग करके दिखाई दे रहा है।

राइट साइड कॉर्नर पे एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे मुझे हार्डवेयर गैलरी दुकान दिखाई दे रहा है।

निपुण के अंदर पे बहोत सारे सामान दिखाई दे रहा है।

राइट साइड कॉर्नर पे एक गिफ्ट ले के आने वाले लोग बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक हिरन को दिखाई दे रहा है।

दो आदमी का सामने पानी बोतल दिखाई दे रहा है।

उसके बगल में शिवाजी का कैलेंडर भी दिखाई दे रहा है।

शोरूम का किनारे पर तोयता लिखा गया है।

एक साइड कॉर्नर पे एक इंडिया फ्लैग दिखाई दे रहा है।

पीछे दिखाई दे रहा है।

और राइट साइड कॉर्नर पर एक खिड़की खुला रखा गया है।

इस फोटो पे हमें एक बड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।